एक बहोत बड़ा शोरूम है सामने बहोत सारे मैच के बंडल रखे हुए हैं।

सामने कुर्सियां और एक टेबल लगा है।

गाड़ी खुली है और पीछे बहुत सारी लाइट्स भी जगी हुई है।

सामने एक लकड़ी का टोकरा भी पड़ा है।

ये एक क्लासरूम है यहां बहोत सारे बेंच लगे हुए हैं।

यहां एक डस्टबिन रखा हुआ है।

यहां एक जिम है सामने नेक्स्ट लेवल जिम लिखा हुआ है।

आस पास और भी बहोत सारी दुकाने दिखाई दे रही है।

सामने खिड़कियाँ हैं और पर्दे भी लगे हुए है।

अंदर महादेव का मंदिर है सामने नंदी बैल की--

यहां केनरा बैंक है बैंक के बाहर कुछ लोग खड़े हैं।